बहुत बड़ा मोल है। इसके अंदर कोई प्रोग्राम है और गोल्डन कलर के ब्लैक कलर के पर्दे लगे हुए हैं। पीछे लाइटें लगी हुई ब्लू कलर की व्हाइट कलर की और कुछ कुर्सियां बिछी हुई हैं।

लोग हैं यहाँ पर कुछ अपने लोग अपने बाग में पानी दे रहे हैं | कुछ हल दे रहे हैं वो ट्रैक्टर है ग्रे कलर का और वाइट कलर का कुछ खम्भे हैं कुछ तार हैं पेड़ -पौधे भी हैं।

तार है पेड़ पौधे हैं और कुछ फूल है ओ कुछ सड़क हैं।

बहुत बड़ा अपना खेत अंदर कुछ म-मजीद टाइप कुछ मकान से बने हुए हैं।

ये एक बोहोत बड़ी नदी है। कुछ पेड़ियां हैं और उसके अंदर कुछ पानी का जहाज है।